दो दरवाज़े हैं। दरवाजो पर रेड एण्ड येलो कलर का पेंट करा हुआ है। अन्दर तीन चेयर्स रखी हुई हैं। अन्दर की दीवार पर स्काय ब्लू कलर का पेंट है और एक बल्ब जल रहा है।

एक पार्किंग का फोटो है जिस में बहुत सारी कारस खड़ी हुई हैं एक बाइक दिख रही है पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं।

व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट कांच के भी इसमें पॉट रखें हुए हैं और ये बाहर सब व्हाइट कलर का है और ये दीवार पे भी वाइट कलर का पेंट है।

ये एक स्टेशन के बाहर का फोटो है जिसके सामने एक शॉप है जिसका नाम है तेजा बुक स्टॅाल है उसके पास मे एक सेंटर है।

और सामने एक लड़का खड़ा हैं जो जिंस पहना है ग्रे कलर का शर्ट पहना है के उसके पास में लड़की है जो शर्ट पहनी है टी-शर्ट पहनी है सामने एक बैनर हे जिसपे घर बना है और नीचे टाइल्स लगे है।

और एक कार दिख रही है आसमान--